यहाँ पे बोहोत सारे आदमी यहाँ आते हैं पूजा करते हैं। यह एक बजरंग बली की मंदिर है। यहाँ पे एक बजरंग बली की मूर्ति भी बनाए गए हैं। लोग यहाँ पूजा कर --

यह एक चर्च है। यह चर्च में ईसाई धर्म के लोग यहाँ पे चर्च में आए हुए हैं। यह चर्च में सभी ईसाई लोग --

आए हुए हैं। यहाँ पे सभी लोग पूजा करते हैं मन्नत मांगते हैं फूल चढ़ाते परसादी चढ़ाते हैं और पूजा --